और स्पष्ट रूप से और कुछ नही दिखाई दे रहे हैं राइट साइड लेफ्ट साइड कुछ नहीं --

यहां टाइल्स लगे हुए हैं एक चबूतरा टाइप का है और उसके बगल में पेड़ फुल है हरे ये पीले टाइप के दिखाई दे रहे है राइट साइड लेफ्ट साइड कुछ दिखाई नहीं--

दीवाल जो है व्हाइट टाइप दिखाई दे रहा है आगे में--

रैक के ऊपर कुछ और भी कुछ रखे हुए हैं शाय--

कुछ कलर टाइप का देखाई दे रहे है और हल्का--

इस तस्वीर मे मुझे पूरा धुनापन दिखाई दे रहे हैं एक टावर टाइप का है जो उसमें है उसे अस्पष्ट रूप से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।

गोलाकार जो है छज्जे बने हुए हैं उसमें हल्का ब्लू व्हाइट टाइप का लगे हुए हैं।

दिखाई दे रहा है लेकिन हम थोड़ा आगे देखते हैं कि फ्लैट नजर आ रही है जो हल्का पीला टाइप दिखाई दे रहे हैं।

हैं और बगल में व्हाइट टाइप का है और बगड में उसके बगड में।